पीछे एक बड़ा भूरा गद्दा रखा हुआ है एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और दीवारें सफ़ेद रंग की है जिस पर एक घड़ी लगी हुई है।

और कुछ हिरण खड़े है चार से पाँच जिनके नीचे है डब्बे रखे हुए है लकड़ी के जिसमे उनका चारा है ।

सामने एक अअ घर दिख रहा है जिसका गेट खुला हुआ है जिसके बाहर शेर की मुउ मूर्ति लगी हुई है।

जिसपे सफ़ेद पेंट है ये जिम है जिम की फर्श का रंग गुलाबी और काला है।

सामने में जो एक डब्बा रखा है काले रंग का--

और चमक रहा है सामने जो ऊंचाई है वहाँ से पानी गिर रहा है जो सफेद रंग का दिख रहा है।